ऊं रैक पे मिठाई रखी गई है नीचे में उँ एक ट्रे में दाल है एक में नमकीन है।

यह रोड है रोड के बीचों बीच एक गाडी खड़ी हुई है गाड़ी के पीछे भी अ--